सारा पेड़-पौधा --

खिड़की खिरपी खिड़की पे बैठा हुआ है बंदर |

एक औरत बच्चे को --

टेलीकॉम ऑपरेटर का एक टॉवर है।

इलेक्ट्रिकल हरमोन्या है एक ढोलक है।

नीला आसमान है बगल में एक पेट्रोल पंप भी है।

आगे एक पानी का तालाब है।